जो की येलो और रेड कलर से पेंट किया हुआ है।

अंदर में एक इंसान भी दिख रही है।

ये फोटो में मुझे बड़ा सा बिल्डिंग दिख रही है जो की येलो कलर से पेंट किया हुआ है।

ऊपर में फैन भी लगाया हुआ है।

ऊपर में फैन भी लटकाया हुआ है।

सामने में रखे बनाना सब भी है।

सामने में खड़ा हुआ इंसानों के हाथ में छोटा सा मटका भी पकड़ के है।

बच्चे के मुंह में मास्क भी पहन किए हैं।

जो कि अलग अलग कलर से पेंट किया हुआ है।

ये रेस्टोरेंट में बहोत सारा टेबल सभी रखाया हुआ है।

ये रस्ते में दो ठो इंसान भी खड़ा होके है।

ये फोटो में मुझे बड़ा सा बिल्डिंग दिख रही है जो कि येलो कलर से पेंट किया हुआ है।

साइड में खड़ा हुआ इंसान के हाथ में फोन भी है।

नीचे में फैन भी रखे हैं।

सामने में दो ठो इंसान भी खड़ा होके हैं।

दूर में बड़ा बड़ा बिल्डिंग भी दिख रही है।

यहां पे बहुत सारा बैठने के लिए चेयर्स भी लगा हुआ है।

ये फोटो में मुझे बड़ा सा रूम दिख रही है।

साइड में पर्दा भी दिख रही है ऊपर में लाइट भी जल के है।